और यहाँ मकानो का रंग हरा व नीला है।

और यहाँ बहुत ही भीड़ है रात का समय है।

यह एक विशाल मंदिर है।

यह एक मंदिर है जिसका रंग काला--

यह एक ईमारत है जिसका रंग सफेद है।

वह डॉक्टर से वार्तालाप कर रहे हैं।

यहाँ एक पीले रंग का फोटो है।